मुझे एक दुकान दिख रही है उ--

कुछ मंदिर दिख रहा है।

और मेंरुनी और सफ़ेद कलर का कलर --

और एक मकान दिख रहा है उसमे गुमट बनी है।

बगीचे हरा - हरा पेड़ दिख रहा है। बादल दिख रहा है।

माला दिख रही है मुकुट पहन रही है।

और उम्म्म्म कलर घुम्मट दिख रही है। लाइटे दिख रही है बहुत सारे मंदिर दिख रहे है।

लाल फुल दिख रहे है। लाल कपड़े दिख रहे है।